लाइट ग्रीन कलर की सामने काउंटर पर आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बीच में एक खंबा दिख रहा है टीन शेड दिखाई दे रही है।

आसमान भी साफ दिख रहा है कुछ नीला दिख रहा है कुछ--